इस छवि में बहोत सारे मकान नजर आ रहे हैं।

इस छवि में बहोत सारी कुर्सियां और मेज नजर आ रही है।

इस छवि में पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इस छवि में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

दरवाजे का रंग काला है।

इस चित्र में बहुत सारे बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

इस छवि मे एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर तीन दीपक के स्टैंड रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस छवि में दो कुर्सियां नजर आ रही है।

इस छवि में बीच में एक फाउंटेन नजर आ रहा है।

इस छवि में फाउंटेन के बगल में काफी सारे पेर और पौधे नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक बड़ा सा आईना नजर आ रहा है।

इस छवि में कुछ बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं।

इस छवि में पानी नजर आ रहा है।

चित्र में दूर में पेड़ो के बीच में कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं।

यह छवि एक बैंक की है।

छवि में कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

सफेद रंग के बोर्ड में ललंस कोचिंग क्लास लिखा हुआ नजर आ रहा है।

पीछे की तरफ मैं बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस छवि में बहुत सारे कुर्सियां नजर आ रही है।

इस छवि में बहोत सारे पेर नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक गाड़ी नजर आ रही है।

छवि एक पेट्रोल पंप की है।

यह छवि एक सब्जी बजार की है।

यह छवि एक ढाबे की है।

इस छवि में दो सफेद रंग के पर्दे नजर आ रहे हैं।